चॉक दिख रही है प्लेट दिख रही है कटोरियाँ दिख रही है हमें यहाँ पे पेड-़ पौधे दिख रहे है व्हाइट कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही--

हमे यहां पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं पौधे दिख रहे है हमें यहां पर रोड दिख रहा है पानी दिख रहा है हमें यहां पर ब्लू कलर के खंभें दिख रहे हैं हमें यहां पर नीला आसमान--

हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है येलो कलर के पिल्लर्स दिख रहे है।

हमे यहाँ पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं हमे यहाँ पर चीज़ और दिख रही हैं जो वाइट कलर की हैं शूज दिख रहे हैं ब्लैक कलर के हैं खिड़की --

कलर का कारपेट दिख रहा है डस्टबिन दिख रहा है ग्रीन कलर का है हमें यहाँ पर पेड़ दिख रहें।

वाइट कलर ब्लू कलर की दिख रही है छत दिख रही है लोग दिख रहे हैं।